और यहाँ पे कुछ टूटे हुए हैं जिसका रंग बहुत ही गंदा हो गया है और --

बिस्कुट के पैकेट रखे हुए हैं। कुछ चॉकलेट फ्लेवर हैं कुछ ये फ्लेवर हैं। कुछ तो पॉकेट में छुपा-छुपा के ले के जा रहें हैं।

ये हमारी परम नाटो श्री ऑफ अमर के घर का ऊपर का व्यू है जो चार मल्ले से लेके पाँच मल्ले तक ऊपर से खुद से बनाए हैं। ये सरिया के नीचे --

जो अभी ध्वस्त किया गया है अंग्रेजों के द्वारा ताकि भारत के पीछे रहे और बिहार सबसे पीछे रहा है और करते रहा है। उन्हें आगे करने --